यह क्षेत्र बनारस में स्थित मैदागिन क्षेत्र का लग रहा है यह मैदागिन क्षेत्र का एक ऐसा बाजार है जहाँ पर दिन भर लोगों के द्वारा सामान खरीदने हेतु भीड़ इत्यादि लगी रहती है।

यह एक स्विमिंग पूल का दृश्य है | दृश्य में यह प्रतीत हो रहा है कि एक पिता अपने बच्चों को तैरने इत्यादि की प्रशिक्षण दे रहे हैं | तैरना मनुष्य की लिए अत्यंत आवश्यक है |अपितु उसे कभी बड़े खतरे में फंसने का भी झंझट रहेगा इसलिए हम सबको तैरना चाहिए|